कुछ लोग का दिखाई दे रहा है सर मशीन में कुछ कर रहे हैं।

उसके हाथ में कुछ सामान रखे हैं चार्ट है हर सीट पे।

यहां पर प्रोग्राम हो रहा है काफी सारे बच्चे हैं।

और एक छोटा सा बैंबू लगा हुआ है जिसके ऊपर कुछ येलो कलर का लगा हुआ है।